चित्र में हमे बहुत सारी गाड़ियां देखने को मिल रही है। यहाँ पे यह एक इ-रिक्शा एक चार पहिया वाहन --

और चिल्ड्रन पार्क सब चीज़ का यहाँ सुविधा है । इस पैलेस --

निकालते हुए नजर आ रहे जिससे फसल खराब --

रोहन के शर्ट के पॉकेट में एक फोन है एवं उन्होंने एक --

ये पनीर खोवा बटर लस्सी पेड़ा रसगुल्ला गुलाब-जामुन दूध पाउडर क्रीम --

एवं सभी प्रकार की बच्चो के खाने की चीज़े से लेकर आलू प्याज --